टेबल्स और कुर्सियां लगे हुए है।

कहीं बालू भी नजर आ रहा है इसमें बहुत कम पानी है मैदान दिखाई दे रहा है।

बहुत बड़े-बड़े चट्टाने दिखाई दे रही है बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं --

घास भी दिखाई दे रहा है | उसमें सड़क भी नजर आ रही है | घास की सड़क बनी हुई है |

बहुत सारे पेड़े नजर आ रहे हैं ।

औरतें भी दिखाई दे रही हैं एक लड़की फोटो खींचते हुए दिखाई दे रही है साइकिल दिखाई दे रहा है दुकान दिखाई दे रहे है।

एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है ।